गाड़ी और बाइक बहुत सारा देख रहा है।

बड़ा सा एक भी लगा के है पीछे साइड में।

ग्रिल को भी पिंक और वाइट कलर पेंट किया हुआ है।

बिल्डिंग का लेफ्ट साइड में तीन ब्लैक वाला वायर देख रहा --

घर को भी व्हाइट और ब्लैक ग्रे पेंट करके है।

आगे में बहुत व्यक्ति लोग बैठा हुआ है खड़ा हुआ है।

घर का आगे में ब्लैक कलर का एक साइन बोर्ड लगा के हैं फ्रूट बींस लिख के।

इस फोटो में एक सुंदर सा घर बड़ा से देख रहा है।

घर का पास में बहुत सारा पेर भी है।

तुम्हें बड़ा सा एक येलो कलर का गेट देख रहा है।

पीछे साइड में दो लोटस फूल भी रखा हुआ है।

यलो कलर का फूल रख के रस्सी से बनाई हुआ एक बाकी भी रख के है।

बिल्डिंग का आगे में व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ऑडिटोरियम ।